ये एक आइनॉक्स के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

जहां पर एक लड़का एक्सरसाइज करता हुआ नजर आ रहा है।

ये एक नर्सरी के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

जहां पर बहोत सारे स्टील के बर्तन जिसमें डब्बे --

यहां पर कुछ सीमेंट की कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

जहां पर से बहोत सारी कारे स्कूटियां और बाइक चलती हुई दिखाई दे रही है।

ये किसी बस की फोटो दिखाई दे रही है जो की एक नीले कलर की बस दिखाई दे रही है।

ऑफिस की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर एक आदमी कंप्यूटर में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है।

और नीचे की ओर दो नीले कलर के बोर्ड भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।